यहाँ एक लड़का स्कूल का बैग टांग कर ब्लू कलर की शर्ट मे खड़ा हुआ है उसी के पास मे बहोत सारे फल भी रखें हुए है और पास में एक कुर्सी भी रखी हुई है।

इस चित्र में बड़ा ही सुंदर सा रेस्टोरेंट दिखाया गया है जिस पर एल.इ.डी. लाइट का वर्क किया हुआ है बहुत सारे टेबल कुर्सी भी बने हुए हैं।